इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जो कि किसी लग्जरी कार शोरूम का है।

यहां पर रेनॉल्ट लिखा हुआ है जो कि बोर्ड पर लगा है।

बहोत प्रकार के तथा पेड़ पौधे उगे हुए हैं आसपास पिलर्स भी लगे हुए हैं।

गुब्बारे यानी कि फ्वारेदार लाइट्स जलाई जा रही हैं तथा पटाखे दगाए जा रहे हैं।

तथा पौधों की झालर टंगी हुई है जोकि बहोत सुंदर दिख रही है और--

दिखाया गया दृश्य जो कि किसी कंपनी अथवा ऑफिस का है।

इस छवि में दिखाया गया दृश्य जो कि किसी दुकान का है जिसमें कि बहोत सारा सामान रखा हुआ हैं।

और काउंटर में बहोत सी मिठाइयां रखी हुई है जैसे कि बेसन के लड्डू बूंदी के लड्डू रसगुल्ला अ पेड़ा आदि जो की बंद है।

जैसे कि गमले रखे हुए हैं जिनमें पौधे लगे हुए हैं या बहुत सुंदर दिख रहा है

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जो की किसी मॉल का दिख रहा है।

यहां पर बहोत से सामान रखा हुआ है जो कि अलग अलग सेक्शन वाइज कॉलम में डिवाइस रखा है।

तथा टेडी बेयर रखे हुए हैं तथा कुछ टेडी बेयर लटके हुए हैं लाइटस जल रही हैं और बहुत ही सुंदर दिख रहा है नजारा।

तथा अह बहुत सुंदर दिख रहा है छत बनी हुई है ऊपर और लोगों ने अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन र--

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जोकि किसी घर का है।

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जो कि किसी जंगली स्थान का है यहां पर तालाब है।

जिसमें की पानी भरा हुआ है और आसपास पेड़ पौधे उगे हुए हैं जोकि बहुत ही हरे भरे हैं तथा पत्थर भी पड़े हुए हैं आसपास।

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जो कि किसी लाल किले जैसी इमारत का है यहां पर लोग आते जाते दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जो कि किसी म्यूजिशियन जैसे कि गिटार तबला।

फलों के ढेर लगे हुए हैं जिसमें कि मोसंबी अनार और भी फल हैं।

जो कि कुछ हरे हैं कुछ पीले हैं तथा अनारों का रंग लाल हैं तथा यह कॉलम वाइज रखे हैं।

गमलों में तथा मेल फीमेल चाइल्ड वूमेन सभी प्रकार के कपड़े हैं।